बच्चे काट कर कुछ बना रहे है| चार्ट पर कुछ बच्चों ने बना लिया है| वो बैठे हुए हैं| पीछे खिड़की खुली हुई है।

'' मेम खड़े होकर उसे चेक कर रही हैं और खिड़की खुली हुई है पीछे कुछ बच्चे बना रहे हैं कुछ ने बना लिया है। ''